साइड में थोड़ी सी रोशनी दिखाई दे रही है।

जींस और लाल कलर का शर्ट पहना हुआ है।

ये पिक में हमें एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

दीवाल पर बोर्ड भी लगे हुए हैं।

लकड़े ईटों पर रखे हुए हैं।

एक हमें व्हाइट कार खड़ी हुई दिख रही है।

ये पिक एक ऑफिस का दिख रहा है।

एक बंदा वर्क आउट कर रहा है।

उसके ऊपर वर्क लिखा हुआ है।

बंदे ने बनियान और पजामा पहे ना हुआ है।

सभी लोग बैठे हुए हैं भोजन कर रहे हैं।

एक प्रोजेक्टर भी दिख रहा है।

तेल के डब्बे पैक किए हुए दिख रहे हैं दो बंदे दिख रहे हैं।

एक बंदा बाहर खड़ा हुआ है।

उपर्स लाइट्स लगी हुई दिख रही है।

गुरुद्वारे में कारपेट बीछे हुए हैं।

लोग सफर कर रहे हैं एक नदी भी दिखाई दे रही है।

इसमें लड़कियां डांस कर रही हैं।

किचन में हमें एक फ्रिज दिख रहा है।

ग्रीन लैंप लेमिनेट शॉपिं नाम का बोर्ड लगा हुआ है।

ये पिक एक राजपूत वेज एंड नॉन वेज रेस्टोरेंट का है।

थाली अस्सी रुपए स्पेशल लिखा हुआ है।

कई लोग भी दिख रहे है।

ब्लू में फैब ड्राई क्लीनर्स लिखा हुआ है।

म्यूजिक सिस्टम दिख रहे हैं जैसे के--

इस पिक में हमें चार लड़कियाँ दिखाई दे रही हैं।